थोडा थोडा पानी पहाड़ के बिच से रिस रहा है और काई जमी हुई।

एक पक्षी जा रहा है। जिसके पंजे बड़े-बड़े हैं। पक्षी बेड --

यहां एक रोड है। जिसके बीच में एक सर्किल बना हुआ है। जिसके ऊपर एक प्रतिमा बानी हुई है। जिसने अपने हाथ को सामने की और किया हुआ है।

रोड के ऊपर बहुत से वाहन गुजर रहे है। तब साइड में एक बिल्डिंग का वर्क चल रहा है।

साइड में एक टेबुल रकी हुए है जिस पर प्लेट कप कॉफी पाउडर जग रखा हुआ है।

एक जे_सी _बी की मदद से खुदाई की जा रही है जहां बगल में पिलर गाड़े हुए हैं ।